जहां पर तरह तरह के फल फ्रूट रखा हुआ है।

और मुझे यहाॅं पर एक घड़ी भी नजर आ रहा--

मैं फेविकोल का पैकेट देख पा रहा हूं।

रेलवे की पटरी दिख रहा है।